नएक नदी है उसमें रास्ता है पेड़ है पौधउ है।

जनलेटर लाइट - उइट सब है बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर आदमी है कुछ आदमी बैठे हुए हैं कुछ आदमी खरा हुआ है एकठो पल पीला लंग रंग के पगरी बाने हुए हैं।

एक नदी है उसमें पानी है सूरज भगवान दिख रहा है दो--

अगल-बगल घर भी दिख रहा है बहुत अच्छा--